यह बहोत साडी दिखाई दे रही हे कुछ चेन भी दिखाई दे रही हे ।

यहा एक ए _सी है बेठने के लिए कुड्सीयो की व्यवस्था है ।

पतली सी पग डंडी दिखाई दे रही हे ।

यह ऑरेंज कलर का गेंदे का फुल हे जिसके सामने --

यहा कुछ भवन दिखाई दे रही है उन भवन के सामने गाड़ी खड़ी हुई है ।

फूलों के पौधे लगाए गए हैं यह पीले संतरे--

यहां उत्सव मनाया जा रहा है खुले आसमान के निच्चे सड़को पर बोहोत सारे लोग एकत्रित हुए है।

एक मशाल में आग जलती हुई दिखाई दे रही है जिसे कुछ लोगों के द्वारा पकड़ कर रखा गया है।

फ्लेमिंगो बनाया गया है जिसके सामने बोहोत सारे पोधे --

लगाय गये हैं यह पोधे इनपर फुल लगे हु--

दिखाई दे रहे हे यह एक चर्च मालूम हो रहा हे ।

पौधे लगे हुए है चमचमाती रोशनियाँ बोहोत ही सुन्दर लग रही है खुले आसमान के निचे दो लम्बे खं--

खम्बे लगे हुए है जिस पर इशु जी दिखाई दे रहे है ।

क्रिकेटर की दिखाई दे रही है वहीं दूसरी ओर एक तस्वीर लगी हुई है जो हमारे ए_पी_जे अब्दुल कलाम की--

यहाँ एक कपडे की दूकान मालूम होती है यहाँ बहोत सारी लाइटे लगी हुई है।

एक दो हरे भरे पेड़ भी है इनपर जाने के रास्ते पर सीडिया बनी हुई है।

वह सीडिया भी पथरो को काट कर बनाई गयी हे ।

लगाये गये है यह बोहोत ही सुन्दर प्रतीत हो रहा है।

यहा स्वच्छ फर्श दिखाई दे रहा हे एक मेज ह--

खुला आसमान हे और इन बिजली के तारो से आसमान भी साफ नही दिखाई दे रहा हे।

सामने एक गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है जिसके जाने के रास्ते पर--

घेरा किया गया है तालाब का पानी बोहोत ही साफ सवच्छ दिखाई दे रहा है ।

किनारे बोहोत सारे घर बने हुए है उपर खुला आसमन है।

सारे पेड़ों और घरों के चित्र इस पारदर्शी पानी में साफ दिखाई दे रहे--

बहोत ही सुन्दर गुरुद्वारा दिखाई दे रहा हे ।

एक पक्की सड़क जिस पर एक ऑटो और एक कार जाती हुई दिख जा रही है।

यह एक डाक घर है डाक घर सफ़ेद रंग का है ।

के साथ खेलते हुए ये बच्चे ही लग रहे हैं।

इनके सामने बहोत सारे वृक्स पोधे लगे हुए हे ।

बोहोत ही सुन्दर गमलो में ये सारे लगाये गये है।

सफेद और लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं कुछ गाड़ियां भी लगी हुई है फर्श पर धूल मिट्टी दिखाई दे रही--

बहोत ही सुन्दर दिखाई दे रहा हे इन पहाड़ो के नीचे बहोत अधिक गहराहिया दिखाई दे रही हे।

भवन में पांच खम्बे लगे हुए हैं एक हरे रंग का लाल सफ़ेद पीला और नीले रंग का हैं एक --

कुछ रंगीन दिखाई दे रहे है कुछ सामान मोतियों से बने दिखाई दे रहे है।

कुछ लाल और पीले रंग की गाड़ियां जिसे देखकर बच्चे बहोत ही खुश हो जाने हैं।

व्यक्ति बहोत ही सुंदर वस्त्रो में दिखाई दे रहे हे।

कुछ बच्चों की साइकिले कार ऑटो ओर स्कूटी भी --

यहाँ एक उत्सव कार्यक्रम चल रहा हैं जिन्हें रंग बिरंगे कपड़ो के माध्यम से सजाया गया हैं।

लाल सफ़ेद गुलाबी और नील रंग के पंडाल से --

एक बड़ा सा दरवाजा सामने की और है एक कार और कुछ बाइक्स खड़ी हुई है।